meet the gimp के tutorial में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
यहाँ इस image में क्या समस्या है
यहाँ कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा है कि इस board पर क्या है
अतः मैं यहाँ इस लिखाई को ऊपर निकलना चाहती हूँ
मैं आसमान को ऐसे ही रखना चाहती choose इसलिए मैं इस layer को double करती choose और मैं curves tool चुनती choose
और image के इस भाग में देखें
मैं इसे थोड़ा हल्का करने के लिए curve को ऊपर खींचती हूँ
यह अच्छा दिखता है और अब मैं यहाँ थोड़ा गहरा करने के लिए इस काले point को और ऊपर खींच रही हूँ
मुझे लगता है कि यह कार्य करना चाहिए
अब मैं साइन board पर जो लिखाई है now नीचे की image में चाहती हूँ
अतः मैं layer mask चुनती choose और layer mask को black से भरती choose
अब मैं अपनी पुरानी image पर वापस आती हूँ और layer mask पर कार्य करती हूँ जिसका border सफ़ेद है
अब यहाँ मैं paint tool चुनती हूँ
और foreground colour में सफ़ेद चुनती हूँ
मैं एक brush चुनती हूँ और उसे बड़ा करती हूँ
और अब मैं layer mask पर पेंट कर रही हूँ
और संभवतः मुझे image में zoom इन करना चाहिए
यह बेहतर है
वो अच्छा है
आप उन कीज़ को देख सकते हैं जो मेरे की indicator में दबाई गयी हैं
यह कहीं बेहतर दिखता है
double मैं layer को दोबारा double करती हूँ और overlay mode को चुनती हूँ और background को थोड़ा अधिक देखने के लिए opacity को थोड़ा कम करती हूँ
मुझे लगता है अब यह अच्छा दिखता है
अब मैं अपनी image को सेव करने के लिए तैयार हूँ
यहाँ मैं प्रतियों पर ctrl कर रही हूँ इसलिए मैं केवल save पर click करती हूँ या ctrl + s दबाती हूँ और अवश्य ही यहाँ मैं सारी layers को सेव नहीं करना चाहती और मैं इसे jpeg image की तरह सेव कर रही हूँ
इस image को web पर अपलोड करने के लिए इसे रीसाइज करने की ज़रुरत है अतः मैं image पर जाती हूँ scale image और मैं width को 600 तक कम करती हूँ
अब मुझे इसको थोड़ा now sharpen करना है इसलिए मैं filters enhance sharpen पर जाती हूँ
मैं image में art effects को जाँचती हूँ और यहां आप कुछ light check सकते हैं
अब मैं इसे copy की तरह सेव कर रही हूँ
मैं इसे small name देती हूँ और सेव करती हूँ
और मैंने इस image को समाप्त कर लिया है
आपको editing करते समय 2 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए
पहली अगर आप image के एक भाग को बदलना चाहते हैं और बाकि को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो उस layer की एक copy बनायें और बदलाव करें और फिर layer mask को on करें
काला image को छुपाता है और सफ़ेद वहाँ की चीज़ों को दिखाता है
दूसरी चीज़ अगर आप overlay mode में दूसरी layer को इसके ऊपर रखे तो image के colours और contrast बेहतर होंगे
बहुत जल्दी edit करने के ये दो तरीके हैं
इस image में आप कम से कम दो समस्याएं देख सकते हैं
पहली मैंने लोगों के पैरों की इमेज cut दी है जबकि उनका साथ में रहना वहाँ ज़्यादा अच्छा होता
और दूसरी समस्या इस image में ये इमारतें गिरती हुई लगती हैं क्योंकि मैंने camera को ऊपर की ओर रखा
मैं perspective tool चुनती हूँ
मैं directions dialog में corrective backward चुनती हूँ और preview में मैं grid चुनती हूँ
मैं outline या image चुन सकती हूँ लेकिन मैं grid चुनती हूँ
और जब मैं image में click करती हूँ तो मुझे यहाँ यह info window मिलती है जिसमे ज़्यादा काम की जानकारी नहीं है
अतः मैं इसे यहाँ से हटाती हूँ और अब यहाँ मेरे पास ये grid है और अब मुझे इस image में grid lines को उर्ध्वाधर स्थिति में अलाइन करना है
output image में ये grid lines या तो उर्ध्वाधर या क्षैतिज होंगी और यह ऊपर की line image का शीर्ष होगी
और अतः मैं इसे यहाँ पर खीच रही हूँ
मैं image को देखती हूँ और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ठीक है
और अब मैं transform दबाती हूँ
और हमें इसे transforms यानी रूपांतरित होने तक इंतज़ार करना है
और यह यहाँ है
अब आप यहाँ दूसरी समस्या देखते हैं
ये भूमि उत्तम नहीं है
अतः मुझे इस image को crop करना है
मैं अपने crop tool पर जाती हूँ
और मैं side की ईमारत को हटाना चाहती हूँ और केवल इसको वहाँ छोड़ दें
यह थोड़ा square की तरह दिखता है अतः मैं fixed aspect ratio पर click करती हूँ और इसे 1 by 1 रखती हूँ
अतः मेरे पास square crop है
image में लोगों को रखने के लिए
मुझे लगता है यह crop कार्य करना चाहिए
इस पर click करें और यह यहाँ है
अब मैं curves tool चुनती हूँ
उसमें अधिक contrast के लिए high lines को थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर करते हैं
अब यह image भी पूरी हो गयी है
यह अगली image है
अतः इस image के साथ क्या करते हैं
मैं rotate tool चुनती हूँ और 1 दबाकर image में zoom इन करती हूँ
यहाँ image के बीच में मैं अच्छे उर्ध्वाधर section के लिए देखती हूँ और direction में मैं corrective backward rotation चुनती हूँ
मैं cubic interpolation चुनती हूँ और preview में मैं grid चुनती हूँ
अब grid lines प्राप्त करने के लिए मैं image में click करती हूँ और अब मैं घर की उर्ध्वाधर संरचना के साथ इन grid lines को अलाइन करती हूँ
और मुझे लगता है बस इतना ही काफ़ी है
मेरे पास यह छोटी खुली window है जो 290 degrees दिखाती है और मैं rotate पर click करती हूँ और अंतिम परिणाम के लिए इंतज़ार करती हूँ
यह यहाँ है
यह बेहतर दिखता है
आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत विकृति है और मुझे उसमें संशोधन करना चाहिए लेकिन अब मैं इस image को क्रॉप कर रही you
मुझे लगता है यह ठीक है
मुझे लगता है कि मैंने image को ठीक से नहीं घुमाया है
मैंने ज़्यादा नहीं घुमाया है और मैंने सही spot को नहीं चुना
अतः इसे दोबारा करते हैं
मैं ctrl + z दबाकर वापस steps को अनडू करती हूँ
मैं rotate tool को दोबारा चुनती हूँ
पहले चुनी हुई settings को मैं नहीं बदलती हूँ और अब मैं image के centre को यहाँ इस tv tower पर centre कर रही हूँ
और बस इस tv tower पर अलाइन कर रही हूँ
tv tower image का प्रधान भाग है और अगर यह सीधा नहीं है तो image सीधी नहीं लगती है
यह बेहतर दिखता है
और अब मैं crop tool लेती choose और इसमें ज़्यादा negative space के बिना crop चुनती choose
अब आखिरी चीज़ संभवतः image में थोड़ा अधिक contrast लाने के लिए थोड़े से curves
यह this है अब मैंने यह image पूरी कर ली है
यह image portrait यानी छायाचित्र के mode में होनी चाहिए अतः यहाँ मुझे यह बदलनी है
मैं image transform और rotate 90 degree anticlockwise पर जाती हूँ
अब मैंने अपनी image को घुमा लिया है
जब हम अपनी image को 90 degrees घुमाते हैं तो इसकी quality में कोई कमी नहीं आती जोकि jpeg images के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
अब इस image के लिए थोड़ा ज़्यादा contrast लाते हैं और मैं यह करने के लिए curves tool प्रयोग करती हूँ
आप levels tool या अन्य प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए curves tool सबसे अच्छा है
बस s curve को हल्का सा इस पर रखें और मुझे लगता है हमने कर लिया है मैं image so करती हूँ
अब अगली image
सब साथ रखने के लिए अपनी images की जल्दी से editing करने के लिए आपको कुछ basic tools की ज़रुरत होती है
पहला rotate tool
corrective mode और grid को preview की तरह प्रयोग करें और grid को उर्ध्वाधर या क्षैतिज अलाइन करें
झुकी हुई lines के लिए आपको perspective tool की ज़रुरत है
दोबारा corrective mode और grid प्रयोग करें और grid को इन उर्ध्वाधर और क्षैतिज के साथ अलाइन करें
image का contrast और lightness ठीक करने के लिए curves tool चुनें और एक s curves प्रयोग करें यह अधिकतर स्थितियों में सहायक है या कुछ स्थितियों में अगर आप एक softer image चाहते हैं तो उल्टा s curves प्रयोग करें और आप यहाँ वास्तविक कोहरा बाहर देख सकते हैं
और image पर जाएँ transform menu जहाँ आप image को rotate यानी घुमा सकते हैं और output के size को scale करें
अंततः filters जल्दी से editing करने के लिए आवश्यक हैं
enhance और sharpen पर जाएँ
बहुत से tools प्रयोग करने के बाद उदाहरण के लिए rotating या transformation tools perspective tools या resizing image ज़्यादा softer हो जाएगी
और sharpening के साथ आप वह redo कर सकते हैं
आपको layers के साथ परिचित होना चाहिए
पहले layer को double करें और उदाहरण के लिए जाँचें कि overlay mode या अन्य modes में क्या होता है
यहाँ अन्वेषण के लिए बहुत कुछ है और मैं इनको कभी और बताउंगी
आप देखते हैं कि हर बार जब मैं layer mode बदलती you तो मुझे पूरी तरह से एक अलग image प्राप्त होती है
और अगर आप image का सिर्फ एक भाग बदलना चाहते हैं तो layer mask जोड़ें और जो चीज़ें आप अपनी image में देखना चाहते हैं white से भरें
और वो चीज़ें जो आप नहीं देखना चाहते black से भरें
gray आंशिक रूप से प्रत्यक्ष है और यह transparent है
और मुझे लगता है इस सप्ताह के लिए इतना ही
और आशा करती हूँ कि अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद